यहां पर बहुत सारे घर भी हैं जो कि ब्लू येलो कलर के हैं और पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है।

यहां पर मुझे बहुत सा वायर्स भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत एक सुंदर सा नजारा दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत बड़ा सा पहाड़ भी है।

मुझे इस तस्वीर में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो की दुकान है और उसके ऊपर में सन एंटरप्राइज और बहुत कुछ लिखा हुआ है।

और यहां पर मुझे बहुत सारा बैरियर भी दिखाई दे रहा है जिसमें से एक पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और बहुत कुछ लिखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक सुंदर सा जगह दिखाई दे रहा है।

और यहां ग्राउंड भी पूरा ब्राउन है और यहां बड़े बड़े पेड़ भी है।

मुझे यहाँ सी_सी_टी_भी कैमरा भी दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारा बैनर जिसका ऊपर एस_बी_आई योनो कैश और बहोत कुछ लिखा हुआ है।

एक टेबल भी दिखाई दे रहा है जो कि पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है और उसका उपर में बहुत सारा किताब रखा गया है।

यहां पे जो विंडोज ओ पूरा का पूरा लोहा से बना हुआ है।

यहां पर बहुत सारा वायर्स भी हैं और मुझे यहां पर हारमोनियम माइक तबला भी दिखाई दे रहा है।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

मुझे यहां पे एक औरत भी दिखाई दे रही है जो माइक पे कुछ बोल रही है।

यहां मुझे एक टेबल भी दिख रहा है जो कि पूरा पूरा लकड़ी से बना हुआ है।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

इस तस्वीर में बहोत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जोकि येलो और रेड कलर का है।

मुझे इस तस्वीर मे एक बहुत सुंदर सा रूम दिखाई दे रहा है जो कि शायद से एक दुकान है जहां पर बहुत सारा फर्नीचर्स का सेलिंग हो रहा है।

यहां मुझे लाइट भी दिखाई दे रहा है जो कि जल रहा है।

यहां पर बहोत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा से हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है जो कि ब्लैक और व्हाइट कलर का है।

उसके पास में ही एक डस्टबिन है जो कि ग्रीन कलर का है।

जिसके ऊपर बहुत सा सामान भी रखा गया है इसके साइड तरफ में पर्दा लगाया गया है एक ग्रीन कलर का।

यहां पर मुझे आदमी भी दिख रहा है जो की काम कर रहा है।

यहां पे बहुत सारा सेल्स भी है जो की पूरा का पूरा शिशा से बना हुआ है।

यहां पर एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग भी है जो कि पूरा पूरा सीमेंट से बना हुआ है।

यहां पर मुझे एक कार्टून भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में बहुत सारा सामान है।

ये इस तस्वीर मे एक बहोत बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारा सेल्फ है जो ये पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है और उसका अंदर बहुत सा सामान रखा गया है।

फ्लावर पॉट और बाउल --

मुझे इस तस्वीर में बहुत सुंदर सा नजारा दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है।

यहां पर हमको एक कैन बियर का बोटल भी दिखाई दे रहा है।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

उसका उपर माउस और मॉनिटर्स रखा गया है।

और यहां पर मैट भी गया है ग्रीन कलर का यहां पे मुझे सीढ़ी भी दिख रहा है जो कि पूरा का पूरा सीमेंट से बना हुआ है।

यहां पे मुझे एक पाइप भी दिख रहा है जो कि ब्ल्यू कलर का है।

का फ्लोर भी टाइल्स से बना हुआ है।

इसका फ्लोर भी रेड कलर का टाइल्स बना हुआ है यहां मुझे एक फ्लावर पॉट भी दिख रहा है।

यहाँ पर मुझे एक औरत भी दिख रहा है जो प्लांट्स को पानी दे रहा है।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

यहां पे मुझे एक बहोत बड़ा सा नदी दिख रहा है जो कि पूरा ब्राउन कलर है।